और ए उनके पास एक आदमी भी खड़ा है।

और सामने एक जेटपॉड लग रहा हैं।

और यहां पे एक आदमी खड़ा है और एक बैठा है।

और एक नीले कलर की टंकी भी रखी हुई है।

और इसके पास में पेड़ भी लगे हैं और कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

यहां पे कुछ बैनर लगे हुए हैं और उन पे कुछ छतरी दिख रही हैं कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

और उसके बाहर ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसपे कुछ जूते उतरे हुए है।

और इसके सामने एक बाइक भी खड़ी है।

जिसने पहाड़ को पकड़ रखा है।

और दीवाल पे नीला कलर हो रहा है।

और इसके नीचे एक में मेज सी पड़ी हुई है।